अ टेबुल कुर्सी पे दो-तीन बैग दिख रहा है जो कि देखने में काफी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है।

और ये लड़का देखने मे बहुत ही एकदम जबरदस्त खराब लग रहा है और साइड मे एक ट्रक है और यहाँ एक आदमी भी है साइड मे खड़ा।

जो कि बहोत ही हरा-भरा दिखाई दे रहा है और यहाँ पे आदमी सब भी कुछ दिख रहा है और छोटा-छोटा पेड़-पौधा फूल दिख रहा है जो कि देखने में काफी ज्यादा सुंदर बहोत ही भयानक दृश्य दिखाई दे रहा है।

और यहाँ पे बोरा दिखाई पड़ रहा है जोकी यहाँ पे एक लेबर अपना भेष-भूसा पे --

ये देखने में काफी ज्यादा सुंदर लग रहा है और इस बैंक में ए.सी. में लगा हुआ है ट्रैन्स्फॉर्मर है और यहाँ पे बाइक लगा हुआ है बहुत सारा आदमी यहाँ पे बैठा हुआ है।